और वहां में बैठने के लिए बहुत सारा ब्लू कलर का चेयर भी लगा के हैं।

वहां में एक बड़ा स्विमिंग पूल भी बने गए है।

नदी के किस किनारे एक आदमी खड़ा हो के है।

यह दूसरे में एक छोटा सा रूम दिखाई दे रहा है।

को व्हाइट कलर का पेंट किए गए है।

वहाँ में बहुत सारा कपड़ा चप्पल और बे टॉप भी रखे हैं।

पीछे में वाइट कलर का फोटो लगा के हैं।

घर की छत को पिंक और गोल्डन से पेंट किया गया है।

रूम में दो दो खिड़की भी बने गए है।

झे इस तस्वीर में एक बिल्डिंग का आधा फोटो दिखाई दे रहा है।

रेस्टोरेंट का दृश्य दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में बहोत सारा लाइट्स भी लगा के है।